एक सिनेमा हॉल का दृश्य है।

छोटा सोप भी दिया गया हैं।

फूल और पत्तियाँ रंग -बिरंगे पत्तियाँ दिखाई --

बहुत सारे घर में यूज किए जाने वाले सामान दिखाई --

लड़का यंग लड़का बैठा हुआ है।

रोड में दिखाई दे रहे हैं दूर में कुत्ते भी नजर आ रहे हैं पेड़ पौधे --

मंदिर के ऊपर में बड़ा सा त्रिशूल लगाया गया है जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है दूर में पेड़ भी है।

खड़ा होकर के फोटो खिचाते हुए दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम खाली है एक व्यक्ति जिम करते हुए दिखाई दे रहा है बाकी बहुत मशीन वगैरह--

लगता है मैच बहुत रोमांचक है इसलिए इतने लोग --

बगल में और भी दो रेलवे ट्रैक है जिसमें भी --